यहां कई सारी कुर्सियां है जिन पर कुछ लोग बैठे हुए है और वह अपना मोबाइल चला रहे हैं।

इनमें आगे काँच लगा हुआ है यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं एक आदमी अपना सामान लेकर जा रहा है।

सफ़ेद और हरे रंग के हैं यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ हैं जोकि गाउन और फ्रॉक पहने हुए हैं।

सफ़ेद कलर से लाइन भी बनाई गई है यहाँ पर आस-पास घास जैसा बना हुआ --

यह एक फूलों की दुकान है जिसमें कई सारी उम गमले रखे हुए हैं।

यह एक क्लासरूम है जिसमें दो बड़ी-बड़ी खिड़कियां लगी हुई है यहां पर कई सारी ब्रेंच रखी हुई है यहां एक लाल रंग की कुर्सी भी रखी हुई है ऊ --

यह ग्राउंड फ्लोर है और यहां पर कुछ लाईटे भी लगी हुई है ऊपर छत है।

यहां पर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है जिसमें यहां लाल रंग का फर्श बिछा हुआ है।